इसमें दो आदमी बैठे हुए हैं और उन दोनों आदमी के आगे--

इसका पानी बहोत ही साफ सुथरा नजर आ रहा है।

और इश कढ़ाई के ऊपर ट्रे हैं।

और इस ट्रे में जलेबियां रखी हुई हैं।

यह एक पार्किंग है पार्किंग के अंदर बहुत से खे पेड़ फुलवारी लगे हुए है।

यह एक कलाकारों की स्टेज है।

यह एक कपड़ों की दुकान है।

तथा गेट के बाहर एक हथोड़ा पुरुष व एक छड़ी रखी हुई है।

जिसमें अमरूद के पेड़ों की काफी नर्सरी है।

और इस नर्सरी के पीछे काफी बड़े बड़े पेड़ भी है।

गेट के बाहर आंगन में एक मोटरसाइकिल खड़ी है।

यह एक नर्सरी है।

और इस सोफे के पीछे एक दरवाजा है और एक दरवाजा बगल में है।

उस सोफे के बगल से ऊपर एक दरवाजा और है।

इसमें इलेक्ट्रॉनिक का सभी सामान उपलब्ध है।